और ग्राउंड मे वाइट सीमेंट भी डाले हुए है यहाँ पट्टी बाउंड्री के यहाँ बहुत सारे लोग भी खरे है और पेड़ भी--

आप देख रहे होंगे कितने सारे गाडियाँ भी देख रहे होंगे आदमी लोग कार भी रखी हुई है--

आयल दिख रहा होगा आपको और यहाँ पे गाड़िया भी खड़ी हुई है और ये पेट्रोल पंप का इंडिया आयल लिखा--

आर ब्लू कलर मे ऊपर वो हैं डेकोरेश और ये कुछ दिख रहे होंगे ट्रक और ये भैया लोग खड़े हुए हैंऔर एक डब्बा भी दिख रहा हैं ब्लू कलर मे--

--का ये स्टेशन है यहां बैठने के लिए चेयर भी है बैंच भी दी गई है ये दुकान देख रहे हैं आप।